डॉक्टर प्राची एस लिखा है और येलो कलर से हेमिओपॅथी लिखा है।

और अब ब्लू खिड़की है और ऊपर लिखा है ग्राम पंचायत घों गे बा घोँघेड़बाड़ी--

सामने पेड़ दिख रहा है नीचे फरश दिख रहा है चॉकलेटी कलर --